और यहां पर कुछ आगे पीछे पेड़ हैंगे और यहां पर घास भी है और ये --

पेड़ भी लगा हुआ है बड़ा सा बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है यहां पे एक बाइक पे हेल्मेट भी टांगा हुआ है।